और इसमें अंदर की तरफ बहोत सारी कलरफुल्स लाइट लगी हुई हैं।

यहां पर बहुत सारी राखी की दुकानें लगी है जिसमें राखियां सामने लटकी हुई है।